कुछ टैबले भी दिखाई दे रही है एक पैन भी दिखाई दे रहा है कुछ ट्यूबलाइटस भी दिखाई दे रही है एक सेंटर भी दिखाई रहा है जीसके बाहर मिर्च भी लगाई हुई है।

गाड़ी भी दिखाई दे रही है और एक साइकल भी दिखाई दे रही है और एक--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

मुक्के बने हुए हैं बहुत हुई है यहां पर बहुत सारे कार्ड चिपकाए हुई हैं में कलर किया हुआ है।

इसके अंदर टेप चकरी समान सब पड़ा हुआ है ट्यूबवेल का सामान पड़ा है वायरिंग पड़ी पड़ी हुई है बहोत सारा समान भी पड़ा हुआ है।

यहां एक पेट्रोल पम्प नजर आ रहा है जो की बहुत ही बढ़िया नजर आ रहा है एक गाड़ी खड़ी हुई है एक स्कूटी खड़ी हुई है और एक आदमी खड़ा हुआ है जो की लाइटें लग रहा है।

आदमी यहां आते जाते रहते है और कुछ बैठे हैं मुन्ना को डना के बैठे हैं बहोत सारे आदमी बै--

बड़ी सी फैक्ट्री भी लग रहा है नजर आ रही है ब्लॉक भी नजर आ रहे हैं और सड़क भी नजर आ रही है सामने कुछ कुत्ते भी नजर आ रहे है।